पोल के ऊपर लाईन खिचा हुआ है और पटरी भी है।

यह एक कॉलेज है कॉलेज का कलर वाइट रंग का है और खिड़की लगाया हुआ है।

हरा कलर का है और सैंडल का कलर लाल कलर का है पीला कलर का है चप्पल ब्लू कलर का है।

घर के बाहर एक रोड बनाया हुआ है जो टाइल्स से लगा हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान का कलर व्हाइट रंग का है और आदमीन भी है।

दुकान के बाहर टेबल कुर्सी रखा हुआ है और बाइक भी लगा हुआ है।

यह एक घर हैं घर का रंग व्हाइट कलर से पैंट किया गया हैं।

घर के बाहर करकट रखा हुआ है जो सफेद कलर का है।

और बहुत सारे आदमीन हैं जो हाथ में कैंडल जला रहे हैं।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

यह एक कॉलेज है कॉलेज का रंग पीला कलर से पेंट किया गया है और लाल कलर से पेंट किया गया है।

रोड के किनारे किनारे फूल लगाया हुआ है जो पौधा है।